इस तस्वीर में मुझे एक नाव दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक पुरुष दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे कुछ खिड़कियां दिखाई दे रहीं हैं।

यहां मुझे एक दरवाजा दिखाई दे रहा है।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

यहां मुझे औद्योगिक परिक्षण संस्थान कटनी दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे एक कुर्सी दिखाई दे रही है।

यहां मुझे बहुत सारे मिट्ठू दिखाई दे रहे हैं।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

यहां मुझे एक दरवाजा दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ खेत दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे एक दरवाजा दिखाई दे रहा है।